डबल बेड पे दो गद्दे पड़े हुए हैं और उस पे नीचे एक पैडी सा सिस्टम दिया है गद्दे वाला।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ बल्ब भी रखे हुए है बल्ब का गत्तों मे है।

इस फिटिंग में सभी सामान रखा हुआ है और उस फिटिंग के बीच में एक सीढ़ी भी पड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल है यह हॉल मस्जिद जैसा है और नीचे इसमें कुछ चटाइयां भी बिछी हुई है।

और उसके बराबर में एक बोहोत बड़ा बैनर भी लगा हुआ है। उस बैनर पर एक बॉडीबिल्डर भी उतरा हुआ है। उसके बराबर में कुछ गुब्बारें लगे हुए हैं --

यह कुर्सी है यहां पे गद्दे भी है व्हाइट कलर के।

और उस गेट पर कुछ लिखा हुआ भी है बराबर साइड में दीवाल पे भी है कुछ पीले रंग का।

और छत पे भी रंग सफेद हो रखा है नीचे बराबर कुछ दूर तक कुर्सियां पड़ी हुई है।

यह एक दुकान है यह दुकान इलैक्ट्रॉनिक की है वह सुंदर दुकान में अंधेरा हो रखा है।

इस काउंटर पे एक बैनर भी लगा हुआ है उसके बराबर में एक बोतल भी है और--

उन सोफों पे तकिए भी है और एक आदमी भी लेटा हुआ उस आदमी का मुंह छिपा हुआ है।

यहां एक बस अड्डा है यहां पे तीन रोडवेज बस भी खड़ी है।

यह एक बैंक है। इस बांक के बाहर कुछ औरतें भी खड़ी हुई हैं और तीन चार इसपे आदमी भी हैं। में दो होमगार्ड भी हैं।

और उस औरत ने लाल कलर का सूट पहन रखा है और आदमी ने सफ़ेद कलर का उप्पर पहाड़ भी है। पहाड़ हरे हरे हैं।

यह एक पार्क है फूलों का वहां उसके अंदर कुछ फूल लगे हुए हैं।

रोड पर एक आदमी और एक स्कूटी एक बाइक भी खड़ी हुई है व--

उसके बराबर में आगे कुछ तीन चार झोपड़ियां भी हैं उन पर छत डली हुई है कुछ लोग आगे खड़े हुए हैं और एक आदमी का तो मु छि

ग्राउंड पे कुछ मेज भी बिछी हुई है साइड में कुछ कुर्सियां बिछी हुई है वह खाली है।

इस काउंटर पे नौ दस गल्ले भी है और काउंटर के ऊपर दो कंप्यूटर रखे हुए हैं ऊपर दीवार पर एक बोर्ड है।

और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है उसके पास में कुर्सी भी है।

और ओके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा सामान रखा हुआ हैं और एक कुर्सी भी है। वे काउंटर भी है। उस काउंटर के बराबर में एक कुर्सी भी है लाल रंग का।

यह एक एटीयमे है इस ए_टी_एम के अंदर एक लोग भी है उसके पीछे एक और हैं उससे पीछे दो औरते भी खड़ी है।

इसके नीचे एक डब्बा भी है एक गिलास रखा हुआ है।

उसके बराबर में एक और अस्टूल है और एक काउंटर रखा हुआ है।

यह एक जमीन है जमीन के अंदर कुछ उग रहा है वह ऐसा दिख रहा है जैसे एलोवेरा हो।

एक झूमर वाली लाइट भी है और दुआर पर एक उम्म कलर हो रखा है। बरबाबर में कुछ टाइल लगी हुई हैं और उसके साइड में --

यह एक गेट है इस गेट के बराबर में एक घर है पट्टे का गेट और है।